और जो ये काफी बड़ा दिख रहा है इसके ऊपर बर्गर शॉप मोमोस पिस्ता चाइनीज और काफी सब कुछ मिलता है एटीन मल्टी-टाइप की बनी हुई दिख रही है।

ये जो है एक हवेली टाइप की जैसी बनी हुई दिख रही है मस्जिद जैसी दिख रही है शायद और नीचे जो है घाँस-फूस दिख रही है पत्तियाँ दिख रही हैं |

काफी सारे जो है फ्लावर्स का डेकोरेशन दिख रहा है ग्रीन कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है कुछ लोग और आते-जाते दिख रहे है बलून्स दिख रहा है लाइट्स दिख रहे है।

एक स्विमिंग पूल दिख रहा है उसमे जो है ब्लू कलर की लाइटिंग दिख रही हैं|

नीचे मार्बल दिख रहा है टाइल्स दिख रहे हैं ऊपर जो है लाइट्स दिख रही है और काफी तरह-तरह की साइकल्स जो हैं खड़ी हुई हैं।